नजर आ रहा है और लोग भी अच्छे तेयार होके खडे हुए है।

अब जगह ग्रीन ही ग्रीन कलर के पेड है और यहा धुप भी आई हुई है।

मंदिर के आजू बाजू में दो तिन नारियल के पेड़ भी लगे हुए है।

मंदिर के सामने तिन चार गाड़िया भी रखी हुई है मंदिर के आजू बाजु में धुप ही धुप नज़र आ रही है।

ये एक मंदिर है मंदिर में एक लेडीज भी खड़ी हुई है मंदिर में शायद कुछ काम चल रहा है मंदिर में ए--

बाजु में सीडी भी नजर आ रही है अम्न्दिर में काफी फेन भी लगे हुए है।

ये एक स्कूल दिखाई दे रही है स्कूल में बोहोत सारी ग्रीन ही ग्रीन पेड़ लगे हुए है।

और नारियल के पेड़ बड़े बड़े लगे हुए है यहा पे ग्राउंड भी है।

यहां पे सीधा रोड भी गया हुआ है यहां पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।

लिखा हुआ है बिल्डिंग में अन्दर ग्रीन कलर की पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे है।

यहाँ पे डॉक्टर चेकअप भी लोगो का कर रहे है यहाँ पे एक बैनर पे लिखा हुआ है।

यहाँ पे एक ओडान पुल नज़र आ रहा है यहाँ पे बोहोत से गाड़िया ही गाड़िया चलती नज़र अ रही है एटो--

झाड़ रहा है यहा पे बहोत सी भीड़ नजर आ रही है।

यहाँ पर बच्चे लेडीज चेयर पे बेठे हुए है उनके पीछे ही एक बिल्डिंग भी वाइट कलर की नज़र आ रही है।

स्कूटी की दुकान में बलून का बहोत सा डेकोरेशन किया हुआ है।

उनके सामने ही एक बड़ा सा पत्थर में झरना भी बह रहा है और यहां पर गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

निचे नजर आ रहा है बिल्डिंग में एक आदमी बेठा हुआ--

तिन चार फेन भी लगे हुए है और बच्चे के पीछे ही दो तिन--

यहाँ पे काफी बड़ी नदी नज़र आ रही है उसमे एक नाव है और दो आदमी नाव भी चला रहे है।

एक आदमी पीछे बहा हुआ है एक आदमी आगे बेठा हुआ है उनके हाथ में एक--

कोई भी नज़र नही आ रहा है डिब्बे डिब्बे सब बिस्किट पेक सब वहा दूकान पे रखे हुए है।

ये एक छोटा सा गार्डन नज़र आ रहा है गार्डन में तिन चार जुले भी दिखाई दे रहे है।

गार्डन के आजू बाजू में पुरे पेड़ ही पेड़ ग्रीन ग्रीन ही ग्रीन --

एक के सामने एक बड़ा सा समुन्द्र नजर आ रहा है रोड पर--कोई

दो तिन गाड़िया भी चल रही है और सूरज भी निकल निकला हुआ दिखाई दे रहा है।

और उसके पीछे ही दो मंदिर भी दिखाई दे रहे है।

आजू बाजू में घर भी दिखाई दे रहे है और पेड़ ही पेड़ यहाँ नज़र आ रहे है।

बस में लाइट भी दिखाई दे रहे है यहाँ दूर दूर कोई भी नज़र नही आ रहा है।

कोई भी नही दिखाई दे रहा है खली एक जगह गाड़ी रुकी हुई है।

यहा पर एक बड़ी सी इमारत नजर आ रही है उस बिल्डिंग का नाम निगम--

पम्तेज एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एसा बड़े अक्षर में लिखा हुआ है।

यहा पर एक बड़ा सा ग्राउंड नजर आ रहा है ग्राउंड में--

या मीटिंग कुछ चल रही है एक आदमी खडे होकर--

ये एक समुंदर नजर आ रहा है समुंदर के सामने ही एक ऊंट भी खड़ा हुआ है।

ऊंट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। उंट के--

और निचे रेत ही रेत नजर आ रही है।

अब एसी बिल्डिंग एक नजर आ रही है उसके सामने ही तो बड़ी गाडी भी--

और नजर आ रही है और उसके सामने ही एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

यहां पर एक बड़ी सी ग्रीन व्हाइट में एक मजित नजर आ रही है। के सामने ही--

ये नर्सरी स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके सामने एक बड़ा सा गेट भी नज़र आ रहा है।

और यहाँ पे कोई है कोई भी बच्चे भी नज़र नही आ रहे है बिल्डिंग में पोस्टर भी बच्चो के लगे हुए है।

यहा पर एक दुकान नजर आ रहा है दुकान के सामने ही बहुत सी भीड़ भी नजर आ रही है।

एलीफैंट बनाये गये है यहा पे दो एलीफैंट खडे हुए है।

और आजू बाजु में ग्रीन कलर के पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे है यहाँ पे कोई आदमी लेडीज कोईनज़र नही आ रहा है।

ये एक जंगल है उस जंगल में बड़े से पत्थर पे पानी बे रहा है और यहाँ कोई भी--

दूर दूर कोई नजर नही आ रहा है जगंल में काफी बड़े बड़े पेड़--

यहा पे चार पाच पेड़ नजर आ रहे है पेड़ के निचे ही--

पेड़ पे मछरदानी बांधे हुए है मचरदानी के पास ही।

यहा पर एक हॉल डेकोरेट किया जा रहा है और यहा पे गेंदे के फुल--

ये एक योगशाला है यहां पर सात आठ महिला ये खड़ी है और योग कर रही है।

ये एक एस_बी_आई ए_टी_ऍम है यहा पे सामने ही ए_टी_ऍम के सामने ही एक--

रेड कलर की गाड़ी भी नजर आ रही है ए_टी_ऍम में कोई भी असे दिखाई नही दे रहा है।

और ए_टी_ऍम के अंदर लाइट भी नजर आ रही है ए_टी_ऍम के सामने कुछ कोई भी नजर नही आ रहा है।

यहा पर एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है यहा पर कोई भी नही दिखाई दे रहा है।

ये एक मिठाई की शॉप नज़र आ रही है यहाँ पे मिठाई ही मिठाई अ अन्दर काचके अन्दर रखी हुई है।

ये एक पुलिस स्टेशन नजर आ रहा है पुलिस स्टेशन के सामने ही एक बड़ा गेट है और--

नजर नही आ रहा है सामने ही एक एक खाली जगह भी दिखाई दे रही है।